और यहाँ पे बहुत बढ़िया-बढ़िया कपड़ा दिखाया जा रहा है इस मोल में इस मोल में किसी भी --

छुट दिया जा रहा है और इसका स्टार्टिंग दो सौ से है।

एक आदमी एक स्कोर्पियो को धो रहा है।

बहुत सारे लोग है यहाँ पे संगीत बजा रहे हैं।